आप देख सकते है यहा पर हमे क कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है यहा पे कुछ बच्चे मैडम के पाव पड़ते दिखाई दे रहे है। बच्चों ने बेग टाँगे दिखाई दे रहे है। यहा पे हमे--

लाल और सफ़ेद और नीला दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें गमला दिखाई दे रहा है पीछे हमें चैनल गेट दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमें झाड़ू पौधे पाइप भी दिखाई दे रहा है।

हेर सलून दिखाई दे रहा है जहा पे हमे एक काले कलर की कुर्सी पर एक आदमी हमे बाल कटवाता दिखाई दे रहा है। यहा पे एक आदमी बाल काट रहा है।

देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें कुछ बच्चे योगा करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमें मिर्रोर दिखाई दे रहा हैजहाँ पे हमे इनका रिफ्लैक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमे--

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें कुछ लोग योगासन करते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमें सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है यहाँ पे हमें सफेद रंग की पोशाक पहने दिख --

हम देख सकते है यहा पर हमे कुछ से गड़िया दिखाई दे रही सफेद रंग की काले रंग की। यहा पे हमे कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे है यहा पे हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी हमे खिड़की खुली दिखाई दे रही है।